यहां काफी सारी गाड़िये खड़ी हुई हैं साथ ही में यहां ऑटो खड़े हुए हैं जो कि जा रहे हैं।

इंस्टिट्यूट का बोर्ड नीले कलर का है।

ये एक स्टोर की पिक्चर है जहां पे काफी तरीके के बिस्किट मिल रहे हैं।

सामने एक नीला कचड़े का डब्बा भी रखा है।

जो कि पीछे दिख रही है।

यहां पर एक नाव जा रही है।

ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

जो आधी जल रही हैं आधी नहीं जल रही हैं।

उनके ऊपर हार डला हुआ है।